यहाँ पर एक गार्डन है और यहाँ पर एक लेडिस झाड़ू लगा रही है जिसने नीले --

कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यहां पे एक पांडाल बना हुआ है जिसकी छत लाल--

ब्लैक कलर और नीले कलर की कुर्सी रखी हुई है।

यहां पर झरना बह रहा है।

मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं।

और सामने एक हवेली बनी हुई है जिसका कलर लाल है।

सामने आसमान नीले कलर का दिख रहा है।

और सामने व्हाइट कलर का सोफा रखा हुआ है।

सामने एक येलो कलर की पन्नी लटकी हुई है।

और सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है।

सामने कुछ जेंट्स भी बैठे हुए हैं।

जिसके ऊपर पीले और लाल कलर से नाम लिखा हुआ है।

यहां पर एक मेला लगा हुआ है।

रेड कलर के झंडे भी लगे हुए है।

दुकान के अंदर बहुत सारा समान रखा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

लेडीज़ और जेंट्स खड़े हुए हैं जिन्होंने सिर के ऊपर--

यहां पर एक स्टेज बना हुआ है।

सामने एक मन्दिर दिख रहा है।

सामने एक गेट भी दिख रहा है इसका कलर सफेद है।

बैठे हुए हैं जो टी_वी देख रहे हैं।

यहां पर वाइट कलर की दीवाल भी है।

रूम के अंदर एक मशीन रखी हुई है।

जिनके ऊपर व्हाइट कलर के तकिया रखे हुए हैं।

और सामने बहोत सारी पुस्तक भी रखी हुई है।

बनी हुई है सामने कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।

और सामने चद्दर क्या एक घर बना हुआ है।

और कुछ पेड़ पौधे भी रक बने हुए हैं और यहां पर एक बाइक भी खड़ी है।

एक बच्चा खड़ा हुआ है बच्चे के पास एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

सामने बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

एक गेट लगा है जिसका कलर नीला है।